हरा कलर में से कौन चीज छे पता न चलय छे और यहाँ पे दि-दिया जले छे और यहाँ पे पि एथि --

कौन लगे छय की लड़का काला कपड़ा पहनले छय।

लगे छे कि यहाँ पावर हे लगे छे यहाँ गाछ वूछ हे सुंदर लगे छे जगह देखे में--

झ- झण्डा के जैसे बनले हाए और बोर्ड भी टाँगले छे और यहाँ लगे छे यहाँ साइकिल भी छे गाड़ी भी छे

और यहाँ लगे छे की पाऊआ जैसे पीला कलर में कुछ वूछ है।